कुछ घर आसपास में काफी सारे पेड़ भी हैं और एक घोड़ा भी है।

मशीन भी है तीन लोग भी हैं।

स्ट्रेटनर घड़ी एक कुर्सी और काफी सारे डिब्बे लाइट --

ईंटों का एक कमरा भी है।